बहुत सारे और एक गेट दिखाई दे रहा है दो बोतल नजर आ रही है।

रूम में चेयर्स और टेबुल बने हुए हैं।

और उपर पोस्टर लगे हैं पोस्टर में लिखा हुआ है ब्रांच स्वीट कॉर्नर --

सोफा में दो लड़के बैठे हुए है।

रूम के अंदर बेंचस लगी हुई हैं।

एक छोटा सा रूम नजर आ रहा है उसके गेट दिखाई दे रहे हैं।

रास्ता के दोनों साइड पेड़ बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं।

डी जी नजर आ रहा है।

दरी एक दिखाई दे रही है।

और चारों तरफ फूल हैं।

और रूम में बहुत सारे चेयर टेबुल लगे हुए हैं।

बाहर एक बाइक और एक आदमी खड़ा हुआ है।

और अंदर में होंडा का लोगो नजर आ रहा है।

दोनों साइड पेट्रोल की टैंक नजर आ रही है एक डीजल की टैंक है।

और एक आदमी खड़ा दिखाई दे रहा है साइड में--

एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

बहोत सारे गाड़ी ऊपर में दिख रहे हैं।

पीछे बहुत सारे पेड़ हैं।

ऊपर तारें नजर आ रही है।

नीचे बहुत सारे कर नजर आ रहे हैं।

ए_सी और लाइटें नजर आ रहे हैं पंखा दिखाई दे रहे।

रास्ता के उस साइड बहुत सारे घर बने हुए हैं।

के चारों तरफ टेंट बना हुआ है।

एक बड़ा सा बिल्डिंग नजर आ रहा है जो बिल्डिंग ऊपर से बन रहा है।

और आसमान नजर आ रहा है।

खड़े नजर आ रहे है।